बरतन नुमा है। कांच का गेट लगा है। बगल में एलसीडी लगी है। लाइटें जल रहीं हैं।

एक नदी है। नदी में बीच में एक नाव है।